यह फोटो किसी मंदिर के अंदर की है जहाँ दीवारों पे ढ़ेर सारी कलाकृतियां दिखाई दे रहीं हैं।

यह फोटो नवग्रह शांति जिन मन जैन मंदिर का है जहां ढेर सारे पत्थर की प्रतिमाएं बनाई गई हैं।

यह फोटो एक मंदिर की है जिसके ऊपर एक झंडा लगाया गया है।

यह फोटो न्यू स्टैण्डर्ड ड्राईक्लीनर्स का है जहाँ इस दुकान के अंदर हम ड्राईक्लीनस करा सकते हैं अपने कपड़ो को इस दुकान में के का डोर ग्लास का लगा हुआ है।

को कमल के ऊपर विराजमान किया गया है कमल के ऊपर उनके उस नाम से रखा गया हैं जैसे श्री नेमिनाथ भगवान श्री पार्श्वनाथ --

यहाँ पे भी सभी प्रकार क साड़ी सूट ऊनी कपड़े शर्ट पेंट की धुलाई और आसपास आयरन किया जाता है।